यहाँ कुछ दुकान लगी हुई नजर आ रही जो बहोत से खाली बर्तन दिखाई रहे हैं साइड में एक महिला और खड़ी हुई रही हैं ।

एक बच्चा भी बालक भी खड़े हुए है मछलियो के पास में समेटता नजर आ रहा है पीछे में कुछ और एक लेडिस और एक जेंट्स बैठे दिखाई दे रहे--

और पीछे में कुछ किश्ती वगैर भी दिख रही जहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहा है और धूप निकली हुई है और यह दिन का समय है आज--

बुक की दुकान दिख रही हैं जहाँ बहोत सी बुक आइट साइड मे रखी हुई हैं बेलड़ियों मे भरके और सामने काउन्टर मे भी बहुत सी बुक को के बेन्डल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

समाने से तो लेडिस आती हुई दिखाई दे रही है और हो कुछ सजा हुआ मकान है आईट-साइट में कुछ भीड़ भाड़ लगी है और नीचे में कुछ लाल कलर की मेटी बिछी हुई है।

यहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें दिख रही हैं जहाँ एक व्यक्ति अंदर घुसते हुए दिख रहा हैं और बाहर मे एक भी फोटो ले रहा हैं मोबाईल से--